और यहाँ बहुत सारा पानी है और यहाँ बहुत सारा पानी है और यहाँ एक सफ़ेद कलर की बोट भी है। और यहाँ एक सफ़ेद कलर की बोट भी है।

यहाँ पे मेरे को बड़ा सा समुंदर दिख रहा है जहाँ पे दो नाव हैं बड़ी वाली और दो नाव हैं छोटी वाली|

यहां पे मेरे को एक मूर्ति दिख रही है जो ब्लैक कलर की है और इसके नीचे बॉक्स बने हुए है।